अ बहोत बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में हमें यहां पर एक स्टेज दिख रहा है।

यहां हमें चार लोग दिखाई दे रहे हैं।